ये एक कार है जो कि सफेद रंग का है और इसे बहोत सारे फ्लावर से डेकोरेशन किया गया है।

पास बड़े-बड़े कार्ड -बोर्ड पेपर है और ग्लू वगैरा है यहाँ पर ग्रिल भी है जो की गेट में लगा --

यहाँ पर ईटे का घर बन रहा है तो अभी प्लास्टर नही हुआ निचे में भी ईटा बिछा हुवा है एक मजदूर जिसके सर पे गमले में ईटा है और वो आगे की और लेकर जा रहा हे

यहाँ पर एक नीला कलर का टेबल है प्लास्टिक का उस पर पानी का थर्मस रखा हुआ है दिवार पर एक टी.वी. स्क्रीन लगी हुई है जो की अभी ऑफ है।